लोहे की उसमें नीले कलर का ला ट्रक भी लगा हुआ है और बिल्डिंग दो मंजिल--

तो यहाँ पे कुछ लोग फोर व्हीलर लेने अंदर जा रहे हैं कुछ लोग बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं कुछ लोग फोन में बात कर रहे हैं।

जो की लाइट द्वारा दूर तक जा रहा है बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और--

स्विमिंग पूल के बाजू में हरियाली है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सामने--

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नी पीले कलर की घूमने वाली रखी है हरियाली है पेड़ पौधे लगे--

इसमें दो कुर्सियां दिख रही काली काली रिंग लाइट लगी हुई है दो एने दिख रहे बड़े बड़े।

यह एक बस है बस में फूलों से सजी हुई है।

और यहां पे स बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ है यह एक गैरेज दिख रहा है गैरेज में लोहे लोहे की पाइप लगे हुएं हैं।